और यहां सामने की तरफ एक आदमी भी दिख रहा है यहां दिवालो का रंग क्रीम और ब्लू दिख रहा है।

इसके आस पास बहोत सारे पौधे लगाए हुए हैं और यहां पर एक काले रंग का प्लास्टिक भी रखा हुआ है।

इस दृश्य में दो बहुत बड़ी सी बस दिख रही है जिनका रंग सफेद और पीला और लाल और ब्लू दिख रहा --

और एक स्कूटी भी दिख रहा है और कुछ लोग दिख रहे हैं जो की रोड पर चलना कर रहे हैं।

बैलूनों का रंग लाल और सफेद दिख रहा है और यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं।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

में की कपड़े रखे हुए हैं और ऊपर की तरफ लाइटें लगाई गई हैं।

और उसके ऊपर बहोत सारे लाल रंग के दिलों से सजावट की गई है सामने की तरफ एक काले रंग का स्कूटी दिख रहा है।

यह एक बैंक का दृश्य दिख रहा है जिसकी दीवालो का रंग सफेद दिख रहा है।

और यहां पर नीचे की तरफ कुछ गाड़ियां भी लगी हुई है नीचे की तरफ एक छत बना हुआ है जिसका रंग सफेद दिख रहा--

और एक ने हरा रंग का शर्ट पहना हुआ है पीछे की तरफ कुछ इमारतें दिख रही है जिनके खिड़कियों का रंग ब्लू दिख रहा है।

और यहां पर दो खिड़कियां लगाई हुई हैं यहां पर बहोत सारे चेयर लगाए हुए हैं जिनका रंग काला और ब्लू दिख रहा है।

और पीछे की तरफ बहुत सारे ड्रॉअर बनाए हुए हैं जिनमें की तरह तरह के सामान रखे हुए हैं यहां पर एक गेट भी लगाया गया--

यह एक डैम के किनारे की तस्वीर है जहां पर एक औरत और एक आदमी फोटो घिंचा रहे है।

इस दृश्य में बहुत सारे छोटे छोटे दीवाल बने हुए दिख रहे हैं।

यह एक कार शोरूम का दृश्य दिख रहा है जिसमें की बहोत सारी गाड़ियां लगी हुई हैं।

पर इसमें खाने की चीज रखी गई है इसमें एक हरे रंग की चटनी भी रखी हुई है और एक लाल रंग का फूल जैसा बना के रखा गया है।

दृश्य में हमें एक दुकान दिख रही है जोकि पलंग और कुर्सियों की दुकान दिख रही है।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

यहां पर एक सफेद रंग का शटर लगाया हुआ है अंदर की तरफ एक पंखा लगाया हुआ है।

और ब्लू रंग के छोटे छोटे मशीन लगाए हुए हैं और एक लाल रंग की कुर्सी रखी हुई--

यह एक सैलून का दृश्य दिख रहा है।